यह एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जिस पे एक टीचर पढ़ाते हुए दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक क्लासरूम की तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पे बच्चों को बैठने के लिए बेंच भी लगे हुए हैं।

दीवाल में दो लाउडस्पीकर भी लगा हुआ दिख रहा है सामने स्मार्ट बोर्ड भी लगी हुई है।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर और चम्मचे रखे हुए हैं।